स्टेज है जिसमें पूरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है पॉप का एक बैनर लगा है दो साउन्ड बॉक्स लगे हैं आगे की तरफ भी दो साउन्ड बॉक्स लगे हैं।

की गाड़ी खड़ी है उसके बाजू में एक और ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है ऊपर लाइट लगी है।

इसमें से अ बहोत सारे पेड़ हैं घाँस हैं बहोत सारी चीजें निकल रही हैं | बहोत सारा पानी है।

शॉप है एक मोटर साइकिल की ठीक करने की | वहाँ टायर रखे हैं कुछ बाल्टी रखी है।

जिसमें से रास्ता भी है जाने का और पानी है और वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है।

बिल्डिंग है जहाँ पर सर्विस सेंटर है |नीचे एक मेडिकल की शॉप है और लैंप लाइटें लगी हुई है और एक मोटरसाइकल है। तीन---